लोग इधर से उधर देखने के लिए जा रहे है एक लड़की झूले पर बैठी है।

जहाज़ पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं उसमे पीला-पीला लाइट जल रहा हैं वो हवाई

ये जगह प्लांट का हैं इसमें लोहा